यहां बहुत सारी बुलेट की बाइक हैं और खिड़कियां लगी है।

घर बहोत ही बड़ा और सुंदर है।

यहां पर एक बाइक है कुछ रिक्शा खड़ी है पास में एक टेंट लगाया गया है।

अलग अलग प्रकार का मिट्टी का समान है।

दरवाजे है तकिए चद्दर बिछी हुई है एक झोला रखा है।

बहोत सुंदर झूला है। सबके बच्चे झूलने आते हैं।

केले हैं सेब है अनार हैं।

यहां पारक है सब बच्चे खाना खाने आते हैं।

बहुत सारी पेड़ पौधे हैं कबूतर आए हुए हैं।

कितना बढ़िया लग रहा है सुंदर दिख रहा है यहां सड़क कितनी अच्छी है।